और यहा पर बहुत सारा समान भी दिखाई दे रहा है मुझे ग्रीन ग्रीन घास भी दिखाई दे रही है और मुझे बहुत दूर तक पेड़ भी नजर आ रहे है दिन का टाईम है मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है उजाला भी दिखाई दे रहा है एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है मुझे यहा--

यहाँ पर हमे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का टीन शैड हमे नजर आ रहा हैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन घास भी लगी हुई हैं कुछ थोड़ा बहुत कचरा भी पड़ा हुआ है यहाँ हमे लंबा-लंबा वायर भी दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट आसमान भी हमे यहाँ दिखाई दे रहा है दोपहर का टाइम है।

यहां पर देखें एक रोड दिखाई दे रहा है आसपास हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है हमें यहां पर एक कार भी।